यहाँ पर भी कुछ मकान बन रहें हैं कि यहाँ पर कुछ मकानों कि पोताई हो चुकी है कुछ कि नहीं हुई है यहाँ पर हरे पेड़ पौधे भी दिख रहें हैं बादल भी दिख रही हैं और --

लड़का भी खड़ा हुआ है एक ने यहाँ पर कुर्सियाँ भी बहुत- सी डली हुई है पंखे भी लगे हुए है तस्वीरें भी चल रही है यहाँ पर--

यहाँ पर कुछ झोपड़ी सी डली हुई है कि एक इंसान भी खड़ा हुआ है झोपड़ी के अंदर लगी वोभी उसकी शेड है कुछअअअ पिंक कलर सी लग रही है जींस का पैंट पहने रखा है उसने गुते भी पहर रखे सूरज भी उग रहा है।